जा रही है और पास ही में रेड कलर की गाड़ी है जो सजा कर खड़ी कर रखी है।

उसपर सफेद चद्दर बिछी हुई है और दो सफेद तकिए रखे हुए हैं।

दो सफेद तकीए रखे हुए हैं और पीछे दो अलग अलग कलर की --

एक नीले कलर की बाइक है और दूसरे काले कलर की बाइक है चारों तरफ हरियाली भरे पेड़ पौधे हैं।

यह घना जंगल है इसमें हिरण और अन्य पशु चर रहे हैं।

और हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है और धूप निकली हुई है मौसम साफ है।

और पेड़ पौधे हरे भरे हैं जिससे वातावरण भी सुनहरा आता है।

उगी हुई है जो खाल्ली बंजर भूमि है।

हरे भरे पेड़ पौधे है और उनपर रंग बिरंगे फूल भी आये हुए है।

और इसमें लाल पीले और नीले फूल भी दिखाई दे --